प्राइमरी लैंग्वेज हम हिंदी बोलते है ओह और हमको नेट भी चलाना सौ परसेंट लिक के आएगा तो

ऊपर गुलाबी कलर किया हुआ है।

यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको एक ऑफिस दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत से लोग कुर्सियों पर बैठे हुए हैं और जो कुछ वर्क कर रहे है सामने एक --